बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ है बाइक है।

है पहाड़ के पीछे पेड़ है पानी दिखाई दे रहा है वाइट कलर के पहाड़ है काला सा पहाड़ के ऊपर घास है पेड़ है।

ग्राउन लाल कलर का बेल्डिंग है उस के ऊपर शिशा लगा हुआ है आगे ऊपर इग्यारा हजार क्रॉस किया हुआ है नीचे पार्क है पार्क के बग़ल में एगो बेल्डिंग है।

एक बड़ा कॉलेज है बहुत सारा फील्ड है मकान है पीछे पेड़ है।

पौधे हैं फूल हैं पार्क है निच्चे घास लगा हुआ है रोड है वॉण्ड्री किये हुआ है।

म -मार्केट है मार्केट में बहुत जाम लगा हुआ है बहुत सारा आदमी है ठेली है गाड़ी है पेड़ है पोल है।

इधर से कुछ गेट है उदहर पीछे कुछ बोर्ड लगा हुआ दिखाय दे रहा है करायी है।